के बगल में एक नीली कलर का डस्ट बिन है।

इस चित्र में एक अपार्टमेंट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

पार्क में बड़े और बूढ़ों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए--

चीजें लगी हुई हैं जिसका रंग लाल और काला है नीचे टाइल्स लगी हुई हैं।